यह एक रूम की पिक है यहां पे सोफे डले हुए हैं टेबल डली हुई है दो आ एक लेडीज एक--

और येलो कलर का पेंट फॉल हो रखा है लाइटिंग और--

ये एक हेयर कट की शॉप है जहां पे बाल कटवाते हैं मेल्स लो--

यह एक हॉल का रूम है। जहां पे बहोत डेकोरेटेड हो रखा है। कैमरे लगे हुए हैं बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं।

यह एक रोड का है जो टू साइड रोड है और बहुत सारी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं घर बने हुए हैं यहाँ --

भी ये रोड जा रहा है यहां पे स्ट्रीट लाइट लगी हुई है एक चेयर पड़ी हुई है बड़ी सी।

यह एक केस है जहां पे पींजड़ा बना हुआ है दो पैरेट बैठे हुए--

ये गाड़ी का शोरूम है। यहां पे वाइट कलर की गाड़ी खड़ी हुई है।

ये एक शॉप की पिक है जहां पे पी_बी शॉपी लिखा हुआ है उषा ऊपर लिखा हुआ--

यह एक रोड की पिक है जहां पे गाड़ियां खड़ी हुई है इस साइड वाइट कलर की खड़ी हुई है।

ये लकड़ी का ये घर बना हुआ है और लकड़ी की चीज ड्रेस लगी हुई है जिसमें फ्लावर्स लगे हुए--

ऊपर अ ब्लू कलर का वॉल हो रखी है और लाइटिंग लग रखी है।

यह एक रोड बना हुआ है जिसके साइड में--

और ऊपर वाइट कलर की शीट्स सी पड़ी हुई है पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

ये एक स्टोर रूम सा है जहां पे बहोत सारी चेयर्स पड़ी हुई हैं बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं।

वाइट कलर की ही फर्नीचर बना हुआ है जिसमें फ्लावर की माला बन--

यह एक क्लॉथ्स की शॉप है जहां पे पूरा वाइट फ्लोर हो रखा है बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं।